यहां बहोत बटा बड़ा बोरड लगा हुआ है गोल चक्कर में।

दिखाई दे रही है छोटे छोटे समान है और--

यह बहुत बड़ी कंपनी दिखाई दे रही है बहुत सुंदर हरा भरा पारक भी है।

क्या सामान है दिख नहीं रहा बहोत सारे आदमी भी खड़े हैं औरते भी और आदमी भी।

सब तरह की चीजे इस दुकान में मिलती है।

खेत या पड़ा है और यहां गाय भी बंधी हुई है।